यह एक शॉप हैं शॉप में रेक बनी है रैक में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

इस साईड भी है आसमान दिख रहा खंबे है तार खींचा हुआ है।